प्रोफेशनल सैलून सिर्फ सैलून का एक पिक आ रहा है इसमें चार-पांच आदमी सैलून का लगता है लगता है आज उ उसका उद्घाटन हुआ है नया-नया इसलिए इस तरह का दृश्य उसको दिख रहा है।